ये एक दुकान है। दुकान में मेज पे --

आए चार प्लेट है जिसमें खाना रखे गए हैं।

और सामने भी ऐसा सामने टेंट दिखाई दे रहा है।

के तरफ पानी वाली जहाज है और वहाँ --

प्रकाश भी दिखाई देरी है।

पार्ट होता है वो टूटा हुआ --

कार को धोया जा रहा है और --

रंग के डब्बे दिखाई दे रहे हैं पटाके के और --

छुरछुरी के डब्बे बहोत सारे रखे हुए हैं और --

और लड़की के और एक दो लड़की के और मुर्गी का ऐसा चित्र बना है।

डब्बो से सजाया गया है वॉश बेसिन भी है।

केले भी लटके हुए दिख रहे हैं और भगवान के --

यहाँ एक लाल कलर की नई कार है जिसका --

बहुत सारे छोटे-छोटे घांस दिख रहे हैं पेड़ के जैसे --

गेट भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ पेड़ पौधे भी दिखाई --

अच्छा खासा हरियाली और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

बल्बे जल रही है और दिखाई दे --